चारो तरफ से पथरीली है। इसमे बडी बडी चट्टाने पत्थर इत्यादि नजर आ रहे है। इसमे जमीन पर ग्रीन कलर कि ग्रासेस भी लग चुकी है। सामने कि तरफ बडे बडे पेड़ पौधे लगे हुये है।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

ब्लॅक सा सरिव टोयटो लिखा हुआ है सामने की तरफ से व्हाइट कलर की कार ग्रे कलर की कार खड़ी हुई है। सामने साइड मे एक सर्विस सेंटर भी है।

सामने की तरफ इसमे सनसेट हो रहा है। सनसेट का अक्स पानी के उपर पड रहा है। जो रिफलेक्शन मे दिख रहा है।

यह एक नदी है। सामने की तरफ एक बड़ी सी नदी नजर आ रही है। इसके चारो तरफ बड़े बड़े पहाड़ है। पहाड़ों के ऊपर ग्रीन कलर की ग्रासेस लग चुकी है।

एक बड़ी सी चट्टान है जिसपे पौधे लगे हुए है। ये पथरीली नदी है। जिसके ऊपर तरफ दो भी नजर आ रहे है। ऊपर क तरफ इसमे आसमान नजर आ रहा है।

मार्केट है सामने के तरफ बडा सा मार्केट नजर आ रहा है इसमे एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे दुकाने है इसमे ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है इसमे स्टेशनरी टॉइज गिफ्टस हाउसकिपिंग लिखा हुआ है सामने के तरफ पार्किंग एरिया है।

यह एक पुराना घर है जो विद्यालय है सामने के तरफ बडा सा विद्यालय नजर आ रहा है जिसमे सामने बोर्ड पर विद्यालय लिखा हुआ है इसमे बहोत सारे गेट है सामने के तरफ ग्राउंड पर ग्रासेस लग चुकी है एक साइकिल खडी हुई है।

उनके बारे मे पुरी जानकारी ली गई है ये चारो तरफ चबुतरा है इसके चारो तरफ लोहे कि रेलिंग लगी हुई है इसके पीछे पेड पौधे लगे हुये है।